पिलर रख के है और सामने मे रेड कलर का और वाइट कलर का रख के है जिसमें खाना रखता है।

ये फोटो में जो हमको जो एक मेडिकल जैसा दिखाई दे रहा--

चेयर में एक इंसान बैठ के है और ऊपर में पूरा लाइट जलके हैं।

यह फोटो में हमको एक बहुत सुंदर सा रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

यह फोटो में जो हमको एक जिम दिखाई दे रहा है।

ए जिम का कलर सफेद है।

ये जो कैफे है उसमें कलरफुल लाइट्स लगा के है उसके पर्पल ब्लू ये सब--

यह फोटो मे जो हमको एक गंदा सा घर दिखाई दे रहे हैं।

सामने बहोत ज्यादा गारी ऐसे जो पार्क करके है।

यहां मैं इंसान लोग जमा होकर है और अंदर में जो लाइटें सब भी पूरा ऑन करके है।

और बीच में जो एक ऑरेंज कलर का मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है।

जिसमें फेविकोल उसके बाद टॉयलेट का सामान्य ये सब जो रखे हैं।

और वो छत के ऊपर जो इंसान लोग जो खड़ा हो के हैं।

ये फोटो में जो हमको ये वाइब्रेंट कार डेकोर दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में जो हमको जो एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

पार्लर का अंदर में जो लाइट जो जलके है।

ये जो मैदान है उसमें गाड़ी उसके बाद बरा बरा बस ये सब है।

पर में जो छत में से और बहुत ज्यादा इंसान लोग हैं।

ओ लड़का जो येलो कलर का कपड़ा सब पहन के हैं।

फिर पीछे में जो औरत लुक है फिर सामने में एक पंडित जी है।

ये कैफे का अंदर में जो टेबल और चेयर ये सब रख के हैं।